क्या चित्रा में आपके सामने बस में सफर का दृश्य दाख गया है जिसमें नील रंग की सीटों दिखाई गई हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही है बस बहुत साफा-सुरी नजर आ रही है जो बहुत सुंदर लग रही है।

बसों के माध्यम से बच्चे जल्द से जल्द स्कूल पहुँच कर शिक्षा ग्रहण कर पाते है और ये ट्रैवलिंग में हेल्प करती है।